ये एक ऑफिस है और एक कुर्सी रखी हुई है और कंप्युटर चल रहा है।

एक बैठने के लिए मेज लगी हुई है और बगल में जाली लगी हुई है राउन्ड में और उसके अंदर पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं हरे हैं और बहुत ही अच्छे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।

गार्डमैन बैठा हुआ है चेयर पे जो एक गार्ड है और बहुत ही अच्छा लग रहा है।

ये एक हेयर कटिंग की दुकान है और दुकान बहुत ही बड़ी है और इसमे कुर्सियाँ रखी हुई हैं जो बहुत ही बहुत सुंदर है और ब्लैक कलर की है।

ये यहां पे कुछ लोग खड़े हुए हैं और एक ऊपर पोस्टर लगा हुआ है।

यहा एक बोट है जो पानी में चल रही है और कुछ लड़कियां डंडे से --

यहाँ एक नाई की दुकान है और यहाँ कुर्सी लगी है।

और यहाँ एक कुर्सी पे लड़का बैठा हुआ है जो यहाँ एक लड़का बाल कटिंग कर रहा है।

और टेबल लगा हुआ है और पीछे तीन चेयर रखे हुए हैं जिस पे दो लोग बैठे हुए हैं और पीछे एक फोटो लगी हुई है।